पौधे भी है और खुला ये बिल्डिंग के पीछे गार्डन एक टाइप है।

पीछे भोलेनाथ का फोटो है नाग है और यह ऑरेंज ग्रीन में नृत्य कर रही है।